शॉपिंग शॉपिंग मॉल चिप्स कुरकुरे।

घर के लिए खुद के लिए तो काम करते ही हैं वो।

जिम से शारीरिक ही आप अपने आप को बदल सकते हैं नहीं।

जब में जो आप कसरत करते हैं ना वो केवल शारीरिक नहीं होता है मानसिक भी होता है आप खुद को सिर्फ शारीरिक रूप --

किसी को बताना हो या समझना हो तो कैसे समझाया जाए।

प्रकृति में भी योगदान है और हमारे जीवन में भी एक सुखद अनुभव देता है।